इस तस्वीर में एक हरा भरा बगीचा और पुराने स्टाइल की एक इमारत दिखाई दे रही है।

और कुछ कारे पार्क की गई है।

नीला आसमान और हरियाली का सुंदर दृश्य है।

ये कार एक कार्यशाला या सर्विस सेंटर के परिसर में खड़ी है।

दीवारों और अलमारीयो पर बहुत सारी वस्तुएं सजा कर रखी गई है।

इस तस्वीर में घोड़ों पर सवार योद्धाओं की मूर्तियां दिखाई दे रही है।

जो ईंट के दीवारों पर स्थापित है।

अग्रिम मूर्तियों में एक जोरदार तलवार उठाए हुए घोड़े पर सवार है।

इस तस्वीर में एक शेड छत वाला ढांचा दिखाई दे रही है।

स्टेशन के सामने कुछ लोग गाड़ियां और एक साइकिल भी दिखाई दे रही है।

सामने एक हरे रंग की जालीदार है।

जो संकेत करता है कि या कोई धार्मिक सामूहिक केंद्र हो सकता है।

विमान में यात्री सवार हो रही है और कुछ कर्मचारी यात्रियों की मदद कर रही है।

सड़क के दोनों किनारो पर दुकाने और सर्विस सेंटर है।

बाई ओर नेक्स्टा सर्विस नाम की एक सर्विस सेंटर बिल्डिंग दिख रही है।

पीछे एक झोपड़ी है जिस पर सार्थक फाउंडेशन का बैनर लगा हुआ है।

इस तस्वीर में एक पुराने बस स्टॉप का गाली या गलियारी कॉरिडोर दिखाई दे रहा है।

दुकान में स्टील के बर्तन प्लास्टिक के समान घरेलू उपयोग की चीजें और किराने का सामान व्यवहित रुप से रखा गई है।

इस तस्वीर में एक साइबर कैफे या कंप्यूटर लैब रूम दिख रहा है।

यहां विभिन्न प्रकार के अनाज मसाले और सब्जियां बेची जा रही है।

कीबोर्ड माउस और कुछ केबल कंप्यूटर से जुड़े सहायक उपकरण--

जो संभवतः प्राकृतिक प्रेमियों और पदयात्रा के लिए बनाया गया है।

इस चित्रों में एक कंप्यूटर लैब को दिखाया गया हैं।

कुछ लोग भी पानी में रहती है।

जो संभावित रूप से इसे नहला रही है।

इस फोटो में एक दो मंजिला इमारत दिखाया गई है।

कुछ लोग पेड़ों के नीचे मैदान में चादर बिछा कर बैठते हैं।

सामने की ओर कुछ लोग दर्शक की तरह बैठे हुई है।

और कार्यक्रम को देख रही है।

रास्ते पर हरा कारपेट बेकार हो गया है और कुछ कचरा भी दिख रहा है।

जो एक मंदिर या पूजा पंडाल पतीत होता है।

और उस पार काले और सफेद रंग की धरिया है।

इस तस्वीर में एक बाहरी स्थान पर खाना पकाने का दृश्य दिखाया गया है।

ये चित्र विभिन्न रंगों और आकृतियों की ओरिगामी कागज की आकृतियां दर्शाता है।

ये आकृतियां ज्यामिति डिजाइनों में बनाया गया है।

और विभिन्न रंगों के कागज से बनाया गई है।

इस चित्रों में एक बर्फ से ढकी पहाड़ी दिखाई गई है।

जहां कई लोग स्किन और स्नोबोर्डिंग कर रही है।

कुछ लोग खड़े है कुछ बैठे है।

और आराम कर रही है।

और कुछ नीचे खिचक रही है।

बड़े सफेद ढेलो में सामग्री भर रही है।